यह किसी इलेक्ट्रॉनिक टी.वी. लैपटॉप की दुकान है।

यहाँ गरीब बच्चों को टूशन पढ़ाते हुए टीचर का फोटो है।

यहाँ पर कुछ इंजीनिअर तथा कुछ --

यहाँ कुछ लोग ढलाई का कार्य --

तथा टीचर उन्हें सिखा रहे हैं बजाना।

सेवा पुरी वाराणसी का गेट है।